इस फोटो में मुझे पाइप फिटिंग की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पानी की टंकी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक कार दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे छोटे छोटे गमले दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे स्टॉल कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे लोहे का पाइप दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पहाड़ दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे एक विद्यालय दिख--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

इस फोटो में मुझे दो महिला दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे महिला-पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कटीले तार दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कांच की गिलासें दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे मीटर दिखाई दे रहा है।